ये किसी एरिया की लोकल मार्केट है।

यह एक बंजर जमीन के यहां एक खाली मकान बना हुआ है।

यह तस्वीर दस बजकर बयालीस इकतीस जुलाई दो हजार बीस में ली गई है।

नीला आसमान है नीचे हरी भरी घास है।

जिसमें आगे घोड़े हैं। पीछे भगवान है और उनसे पीछे हाथ जोड़े हुए एक और भगवान --

जिसका एक हाथ ऊपर और दूसरा हाथ नीचे है।

और इसके साथ ही अवध फूड भी रखा हुआ गया है।

और काफी अच्छी नकाशी से बनाया गया है ये।

और काफी अच्छा इदे सीढ़ियां बनाई गई हैं।

सीढ़ियां जो है वो ग्रे और ब्लैक डॉट से बनाई गई है।

बच्चा जहां खड़ा है वहां पे पानी का एक अ फाउंटेन है।

ये किसी एक मेन गली या रोड पे बनी गई है।